इस चित्र में हमें कुछ रॉयल एनफील्ड बाइक दिखाई गई है।

अर एक आदमी बाइक पर खड़ा और जो एक डब्बा रखा पीछे डी_जे का।

एक लोहे का दरवाजा दिखाया गया जो की लाल रंग का पेंट कर रखा जिसपे--

इस चित्र में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया गया है जिसका नाम अर्पित अल्ट्रासाउंड सेंटर है।

और यहां पे स अल्ट्रासाउंड होता है और बाहर कुछ बाइके भी खड़ी हुई है।